जिम का चित्र दिखाई दे रहा है इसमें कई सारी वगैरह- वगैरह मशीने लगी हुई हैं और कई सारे काँच भी लगे हुए हैं।

और कई सारी कुर्सी भी डली हुई है।

एक डॉक्टर का लैब है और इसमें बोहोत सारी दवाई रखी हुई हैं।

एक किचन का चित्र दिखाई दे रहा है और ये किचन कित्ती अच्छी टालते भी लगी हुई है।

और अगल-बगल बहोत सारा सामान भी रखा हुआ है और ये ठिलीया कांच का बनी हुई है।

और इस नदी का पान और सुंदर लग रहा है और कई सारे लोग ईधर अपनी अपनी फोटो क्लिक करा रहे --

मंदिर का द्वारे का चित्र दिख रहा है और इसमें चैनल भी लगी हुई है।

और सारे कलर पुते हुए हैं और बोहोत अच्छा मंदिर भी लग रहा है और भगवान की मूर्ति भी रखी हुई --

और कई सारी बोटे भी डली हुई हैं और कई सारे लोग बोट बोटिंग भी कर रहे हैं।

लोग भारी भरकम मशीने भी उठा रहे हैं और इधर बहोत सारी लाइट भी लगी हुई है।